बहुत ही हेबी किया हुआ हैं और ये--

बहुत सारे दिक्कते --

यहां का लुक काफी ज़बरदस्त दिखाई दे रहा होगा पेड़ पौधा हरा-भरा चारों साइड से हैं और--